इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिख रही है जिस बिल्डिंग के बाहर कुछ महिलाएं खड़ी दिखाई दे रही है।

खेत के पास थोड़ी सी जमी हुई पानी दिख रही है।

इसमें रेड कलर के गद्दे बिछे हुए हैं।

एक मिनी स्टेज बना हुआ है और ट्री कलर के बैलून से सजावट किया हुआ है।

एक फ्लैग दिख रहा है जो कि इंडियन फ्लैग है।

बाउंड्री के दूसरी ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सड़क दिख रही है उसे सड़क के पास बहोत से कार दिख रहे हैं बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।